अ ये फोटो दरभंगा पैलेस की है जो दर सोरी दरभंगा घाट पे की और ब्रिजरमा पैलेस की है और यहाँ पे कुछ पेड़े दिख रही है। ये ब्लैक एण्ड व्हाइट फ़ोटोज़ है थोड़ी-सी ब्लूइश टोन में है।

कुछ लाल कलर का वस्त्र पहना है और कुछ ने सफेद कलर का वस्त्र पहना है।